जिसके अगल बगल गार्डन है हर गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं।

की फोटो है जहां पे बहोत आदमी इकट्ठा हुए हैं अर--

बहोत सारी गाड़ियां नजर आ रही है जो कि पार्किंग एरिया लग रहा है और इस--

फोन चला रहा है और इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ हैं जो कि भरे भरे नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में हमे साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेकरी के अंदर की फोटो है।

सोफे नज़र आ रहे हैं जोकि एक ब्लू कलर का एक ब्राउन कलर का सोफा नजर आ रहा है।

की तरह के ड्रेस नजर आ रहे है लाइट फूटबाल आदि के--

इस पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये --

देते हुए नजर आ रही है। इस पिक्चर के अंदर का जो व्यू है सीडी सीडी आगे दिखाई दे रही है जैसे की ये--